और एक लेडी ब्लू कलर का कुर्ता पहने खड़ी हैं।

और एक पैर ऊपर करके सोया है।

मुझे इस चित्र मे दिखाई दे रहा है कि एक हॉल है।

उन ट्रैक्टरों पे फूलों की माला चढ़ी है और एक आदमी पास में खड़ा है।

ये रेस्टोरेंट में कई टेबलें और कुर्सियां रखी हुईं हैं।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

सर्विसिंग कि दुकान है जहां पे सर्विसिंग के अलग अलग--

पोस्टर लगा हुआ है और कुछ कुर्सी और एक टेबल रखी हुई है।

जहां पे अलग अलग केबिन बने हुए हैं और केबिंस में लोग काम कर रहे हैं।